ये तस्वीर में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा सा किला दिखाई दे रहा है।

उनका टार्च का कलर रेड एंड ब्राऊन है।

इसका सामने बहुत सारा अलग अलग रंग का साइकिल्स रखा हुआ है।

रेस्टोरेंट का बाहर एक स्कूटी है।

पानी का कलर नीला है।

और उसका नीचे बहुत ज्यादा कार्टून है।

जे_सी_बी का कलर येलो है।

बहुत ज्यादा आदमी दिखाई दे रहा है लड़की लड़का--

एक अंकल पिंक कलर का शर्ट पहन कर दिखाई दे रहा है।

बनाना का ट्री भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ का पीछे एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है।

उसका नीचे एक पानी जा रहा है।

सामने बहुत सारा पत्ता हैं।

ब्रिज के नीचे बहुत सारा पत्थर दिखाई दे रहा है।

सामने एक हरे रंग का डसबिन रखा हुआ है।

नीचे में ही बहुत ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा है।

यहां में पांच स्टूडेंट दिखाई दे रहा है।

यहां में टीचर्स लोग गाले पहन के दिखाई दे रहा है।

सामने मे एक इलेक्ट्रिक पोस भी है।

ये तस्वीर में बहुत सारा अलग अलग किस्म का बड़ा बड़ा सोफा रखा हुआ है।

सामने एक ब्राउन कलर का टेबल रखा हुआ है।

बहुत सारा कुरकुरे चिप्स का पैकेट भी दिखाई दे रहा है।

और इसमे ब्लू पेंट लगाया गया है।

आस पास बहुत ज्यादा फोग दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड में थोड़ा थोड़ा किचड़ भी दिखाई दे रहा हैं।

इसको तार का मदद से हैंग किया गया है।

ये तस्वीर मे बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

ये मर्द है और कोई औरत है।

यहां पर बच्चे खेल रहे हैं।

ये तस्वीर में एक बड़ा सा व्हाइट मंदिर दिखाई दे रहा है।

साइड में बड़ा सा दीवार उठाया गया है।

जिसका अंदर और बाहर बहुत ज्यादा मॉन्क है।